उसके बगल में एक स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है जिसके सामने काफी सारी बाइक पार्कड है।

इस फोटो में कार पार्क नजर आर ही है। कई सारी कार पार्क लगी प पार्किंग मे लगी हुई है और कुछ कार चलती हुई नजर आ रही है।

यह एक लाँड्री लैब का पोस्टर लगा हुआ है लोहे के बने-बड़े गेट के उपर यह गेट का आधा पल्ला खुला हुआ है और आधा लगा हुआ है इस लाँड्री मे सभी तरह की लाँड्री की जाती है।

यहाँ पर कुछ पाइप लाइन्स भी नजर आ रही है।

और एक शिक्षक इन्हे ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रही है।

यह एक जिम है जिसमें एक आदमी बा बलून बॉल पर लेट कर डिप्स लगाते हुए दिखाई दे रहा है।

इस जिम में जिम का काफी सारा सामान नजर आ रहा है और यह जिम टीनों से बनी हुई है।

इस मंच पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें कुछ बच्चियां सांस्कृतिक नृत्य करते हुए नजर आ रही है।

और एक आदमी उसे मछलियां खरीदने के लिए खड़ा हुआ है जो कि मछलियों को देख रहा है कि उसे कौन सी मछली खरीदनी है।